पेटी है जो कि रेड और व्हाइट कलर की है। इस शॉप के ऊपर मुझे दो छोटे-छोटे पंखे भी दिख --

दिखाई दे रही हैं। इन दीवारों पर खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं छोटी छोटी --

मुझे सामने दो शॉप दिखाई दे रही है। इन दोनों शॉप के बाहर मझे कुछ गाड़ियां रखी हुई दिखाई दे रही है।

स्टेशनर्स इस शॉप के अंदर मुझे एक पंखा दिखाई दे रहा है जोकि छोटा है।

अंदर मुझे कुछ सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस बिल्डिंग के बाहर मुझे आदमी दिखाई --

मुझे सामने तीन-चार मूर्तियां भी दिखाई दे रही है। जिसमें से एक मूर्ति मा --

मुझे सामने एक लड़का दिखाई दे रहा है। इस लड़के के पीछे मुझे एक और लड़का दिखाई दे रहा है जिस --

ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कॉलेज एंड चैरिटेबल हौं --

इस पिक्चर मे मुझे सामने कुछ शॉप दिखाई दे रही है। इस शॉप के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है। जिस --

मुझे सामने दो तीन हाथी दिखाई दे रही है जोकि ब्लैक कलर के हैं। इन हाथियों के पीछे मुझे बड़े-बड़े --

पंजाब नेशनल बैंक । इस बिल्डिंग के बाहर कुछ गाड़ियां रखी हुई दिखाई दे रही हैं। एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

बस दिखाई दे रही है जोकि रेड और व्हाइट कलर की है। इस बस कांच ब्लैक कलर की हैं।

इस पिक्चर में मुझे सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। इस बिल्डिंग के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। जिस पर लिखा हुआ है बंधन बैंक ।